इस पंडाल का गेट काफी बड़ा है ।

यहाँ पर एक टैम्पू खड़ी है।

यह घर काफी बड़ा है इस घर को सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है इस घर में एक काउन्टर है।